तारामाची में बहुत सारे आदमी झूल रहें हैं ब्रेक डांस भी है काफी सारी लाइटिंग लगायी गयी है लोगों की भीड़ लगी हुई --

और में स्टेट बैंक में लोग पैसे निकालने के लिए आते हैं बहुत सारी और भी अनेक-एक दुकानें हैं ।

ये पंडाल बनाये गए हैं बहुत बड़ी पंडाल बनाये गए है यहाँ पे सोफा लगाया गया है और स्टेज भी बनाये गए है

यह एक मैदान है यह मैदान में बहुत सारे हरे-भरे पेड़ लगे हुए हैं यह मैदान काफी हरा-भरा दिखाई देता है यहां पे बकरी भी चरने आती है।

यह एक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक है यहां पे ए.टी.एम. से पैसा निकालने के लिए लोग आते है इस बैंक में लोगो की काफी भीड़ लगी रहती है।

सभी लड़के एक-एक बेंच में एक-एक गो लड़के बेठे हुए हैं अपना बेग नीचे रख दिए हैं और एग्जाम दे रहे हैं।

यहाँ पे यह औरत खाना बना रही है गैस पे खाना चढ़ाई हुई है यहाँ एक आदमी एक कॉपी में कुछ लिख रहे हैं और एक आदमी उधर से देख रहा है यहाँ पे बहोत सारे सामान भी रखे हुए हैं।